यहाँ एक यात्रा निकल रही है और एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है और ट्रैक्टर में गुरूजी बैठे हुए हैं।

जैसे कि बुक्स का एडवरटाइज कर रहै है और लइब्रेरी मे वाइट कलर की छत है और लाइट का प्रकाश आ रहा है।

और खेत में एक लड़का खड़ा है जो कि कानो मे एअरफ़ोन लगा के खड़ा है।

खड़ा हुआ है| डीजे साउंड लगा हुआ है| कुर्सियां लगी हुयी हैँ| जहाँ बच्चे बैठे हैँ और एक बच्चा माइक लेके बोल रहा है| पीछे बैलून लगे है| वाइट ग्रीन और ऑरेंज |

आगे एक व्यक्ति बैठा है जोकि पत्थरो पे बैठा है। पत्थर यहाँ पे काले रंग के हैं और पानी यहाँ पे हरे रंग का है।

यहाँ नव दुर्गे माता का मंदिर है। यहाँ माता के मंदिर मे लाइटिंग डेकोरेशन हो रही है चांदनी लगी हुई है।

यहाँ एक गड्ढा है। इस गड्ढे मे लोहे का सरिया लगाया हुआ है प्ले कर --

यहां एक व्यक्ति रोड पे मच्छी रखे हुए है। व्यक्ति के पीछे बांस का एक टटिया टाइप का है। कुछ इधर उधर याद --

और ब्लैक कलर की चेयर हैं और पानी की बॉटल रखी हैं। वाइट कलर की जूस की बॉटल भी रखी हैं।